ये हैं पर्यटक स्थल यहां पे काम चल रहा है कन्स्ट्रकशन का | यहां पे बहुत सारे इंजीनियर आपस मे बात कर रहे हैं और काम के सिलसिले मे बात चल रही है और इनके पीछे पहाड़ है देखने मे बहुत अच्छा लग रहा है।

प्रोजेक्ट ली है जिनपे कम कर रहे हैं बच्चे और मैम सबका प्रोजेक्ट देख रे हैं कौन बच्चा कैसे बनाया है | स्कूल भी देखने में बहुत ही अच्छा है | स्कूल का कलर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है | मैम साड़ी पहनी हुई है।

और यहां पे बहुत सारे बच्चे आए हैं पढ़ने और यहां पे देख रहे है एक बच्चा मेम के पैर छु रहा है और जो देखने मे काफी सुंदर लग रहा है और यहां पे सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए है|

यहा पे आपको पार्ट्स एंड सर्विस का उ मिलता है जेनुएन स्पैरपार्ट्स मिलता है मेकेनिकल वर्क्स मिलता है डेंटिंग एंड हीट पैंट मिलता है सर्विसिंग एंड वॉशिंग मिलता है व्हील अलिग्न्मेंत मिलता है।

ये है बूक स्टोर भावना पुस्तक सदन सुपौल यहां इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है इनके आगे एक पेशन प्रो का बाइक लगा हुआ है।

नाव है जो देखने मे काफी सुंदर लग रहा है एक बाबा नाव चला रहे है जो काफी सुंदर लग रहा है नाव को किनारे लगाना चाह रहा है ये एक ब्रिज है।

यहा पे घर का काम चल रहा है जो की काफी सुन्दर लग रहा है | यहाँ पे एक इंजीनियर भी है | यहाँ पे एक मजदूर है जो मसाला बनाता है और एक मम मिस्त्री है जो ईंटे जोड़ता है।

यहां पे आदमी बहुत सारे आदमी आके एक साथ चाय पी सकते है यह बहुत ही बड़ा हॉल बनाया गया है इसमें ---

ये एक टोयोटो है इ रिक्शा जो बैट्रीक पे चलती है व लाइन पे चार्ज होती है इलेक्ट्रीसिटी पे चलने वली ये टोयोटो इ रिक्शा है।

इ रिक्शा है यहाँ देख सकते है आप देखने में काफी सुंदर लग रहा है इनका स लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है।

अश्वशाक्ति ईरिक्सा है जो न्यू अभी शोरूम निकला गया जो देखने में बहुत सुंदर है इनके ऊपर तीन हेडलाइट लगाया गया है।

और पार्क के अंदर भी छोटा-छोटा पौधा लगा हुआ है पार्क बहुत लंबा है और काफी सुंदर है एक पार्क के बीच में घना-सा पेड़ है।

एक लड़का तबला बजा रहा है एक कसिओ बजा रहा है जो दिखने में काफी सुन्दर लग रहा है और यहाँ पे फंक्शन चल रहा है जो की यहाँ पे अभी ये सब गाना गाने वाले है और तमाशा करेंगे यहाँ पे।

पी_एम_सी_एच पटना में अभी रह रही हैं स्त्री एवं प्रस्तुति रोग का विशेषज्ञ है ये-----